ये एक मीट की दुकान है जहाँ बहुत से लोग- बहुत से लोग काट अ प मीट काट रहे हैं और दो तीन लोग बेठे हैं मीट लेने के लिए।

यहाँ एक मछली की दुकान है। जहाँ बहुत सारी मछली है। नीचे डब्बे रखे हुए हैं फ़ोम के और ऊपर एक टेबल है और यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और एक --

एक वह लड़का है जो फ़ोटो खिचवा रहा है। जिसने चश्मा पेहरा हुआ है के नीचे जीन्स है और नीचे --

पैर रखी हैं उसके पीछे एक बोट है जो लकड़ी की है और साइड में वह नदी है ओर में खिचड़ी विचड़ी कीचड़ विचड़ हो रखी है।

जीन्स है जो नीचे से फ़ोल्ड कर रखी है और ये नंगे पैर है जिसके पीछे एक आदमी खड़ा है जिसने टी शर्ट पहन रखी है नीले कलर की।

यहाँ तीन लड़के फोटो ले रहे हैं। एक ने फोन पकड़ रखा है। एक मोछमुंडा और एक तीनो टी शर्ट पहनी हुई नीचे। एक ने कार्गो जिन्स पैंट पहनी हुई है।

लोअर पहने हुए हैं। नीचे एक फर्श है लाल पीछे मशीन हैं बहुत सारी। उसके पीछे एक आदमी की फोटो छप रही है।

एक लड़का है। सेल्फी जो फोटो ले रहा है अपनी जिम की। उसने एक टीशर्ट पहनी है डार्क नील कलर की। जिसमें लाइनिंग जा रही है लाल कलर की नीचे लोअर है।

डाइल्स भी लगी हुई है जो दो रंग के काले और ल लाल पीछे कुछ डिजाइन सा बना हुआ है।